मैरेज गार्डन है। जिसमे बहुत सारी घासे है। जो कि हरे भरे है कुच्छ पेड़ पौधे है जोकि बड़े बड़े है। एक स्टेज है। जिसमे बहुत सारे लोग खड़े है।

एक स्टेज है जिसमे एक सिंगर खड़ा है वे हातो मे गिटार लिया है आखों पर चश्मा पेहना हुआ है।

पीछे कुछ गमले रखे है जोकि लाल कलर के है उनमें कुछ पेड़ पौधे लगे है जोकि हरे हरे है।

एक कॉलेज है जिसके सामने कइ गाड़ियाँ खड़ी हुई है गाड़ियाँ रंग बिरंगी है उनके सामने दो लडकी खड़ी हुई है।

उसके पिछे वाली भी एक लड़की त्रिशूल रखी हुई है कुछ तलवार रखे है कुछ सर रखी हुई है जो नकली सर है।

चारो तरफ कुच्छ पेड़ पौधे लगे है।